जिससे हमें भी पता चलता है जे यहाँ के जानवर लोग भी बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन जैसे हम लोग घर में बिताते वैसे ये लोग अपना पहाड़ी इलाका में बिता--

संदीप कुमार और उसके साथ कोई लड़की का नाम नहीं पता लड़की का शादी होने वाला हैं जो ये स्टेज पर--

फिर भी ये सब खाने से हानिकारक होते हैं जो अपना घर का अच्छा लगता है अच्छा अपना घर के बनाने कर खाने में अच्छा लगता--

हमारे गांव में भी ऐसा उपस्थित है जो हम लोग भी ऐसे ऐसे तरह के बाल कटवाते हैं।

ये एक होटल हैं इसमें बहुत सारे पकवान दिखाई दे रहे हैं मिठाई बर्फी पेरा ।

कुरकुरे चॉकलेट बिस्कुट बहुत सारे इत्यादि मिलते हैं।

ये खिराना दुखाई दुकान दिखाई दे रहा हैं यहाँ पे बहुत सारे सामान उपस्थित दिखाई दे रहे हैं रस्सी बाल्टी--

यहां पे फोटोस्टेट भी होता है लेमिनेशन सीट भी होता है प्रिंटे आउ --

यहाँ पे तीन चार दुकान दिखाई दे रहे हैं जेम रेफरेटर फ्री वाशिंग मशीन ए_सी ।

पुल बना हुआ है यहां पे बहुत हरियाली और बहुत दूर तक हरा भरा दिखाई दे रहा है यहां का नजारा देखने में अच्छा और स्वभाव लग रहा--

ये हॉस्पिटल दिखाई देते नजर आ रहे हैं इसमें बहुत सारे मरीज लोग--